पुतलों के ऊपर भी ड्रेस पेहनाई गयी हैं।

सड़क पर कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं। बाजार में बहोत रोनक है। दुकानों --

एक हमें झोपड़ी जैसी आकृति भी दिख रही है जिसपर झंडा लगा हुआ --